है और वहाँ पे एक चिड़िया दिख रही है पीछे में एक घर जैसा बनाया गया है वहाँ पे एक ब्लैक कलर की चिड़िया दिख रही है।

यहाँ सामने में एक घर जैसा बनाया गया है उसमें दो तीन --

ये ज़मीन पूरा सूखा-सूखा लग रहा है।

यहाँ पर ये एक रूम छोटा सा रूम जैसा दिख रहा है और इसमें एक आदमी है जो की एक मशीन लिया हुआ है जिसमे से ब्लैक कलर का तार निकला हुआ है।

ऐजे बनाई गयी है एक लम्बी सी पाइप है जैसे बनाई गयी है यहाँ पे ऊपर में --